और लेडिस के भी है तीनगो और दिखने में अच्छा लग रहा है एगो इधर भी बच्चा जैसा है पुतला बनाया हुआ है एगो इधर भी जेंट्स है ।

और सुंदर लग रहा है देख --